यह एक शोरूम है अंकिता साड़ी लेडीज साड़ी सेंटर जिसमें बहुत सारी साड़ियां --

ये एक मोबाइल का शोरूम है।

ब्लूटूथ सारी लगी है इसमें मोबाइल तैयार करता है और इसमें मशीन लगी हुई है मोबाइल तैयार करने की।

पार्क जी नज़र आ रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड बहोत ही अच्छा दिख रहा है लोग वहां पर भीड़ जमा हो रखी है।

ये वैष्णो का रेलवे स्टेशन है इस पे लोग पीछे वैष्णो का करणी माता मंदिर दिख रहा है थोड़ा सा --

तारे लगी है बिजली है खंभा है लोग आना जाना कर रहे हैं एरिया भी बहोत ही अच्छा दिख रहा है।

पत्थर गिरे हुए हैं कुछ बच्चे पत्थर पर बैठे हुए हैं कुछ बच्चे घूम रहे हैं कुछ लोग फोटो क्लिक क --

ये एक ओटो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसमें वायरिंग का कार्य किया जाता है।

यहां पर बच्चों की पढ़ाई की जाती है।

ये हसबैंड वाइफ है इन्होंने रिक्शा लिया है जो रिक्शे को ओपनिंग कर रही है और फोटो लगा रहे हैं अपनी वाइफ के साथ।

ये सैलोन बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहां पे लोग सेविंग वगैरा करते हैं यहां पे जेंट्स --

ये एक दोहरे जैसी ज हमे दिख री है बहोत ही अच्छी लग री है यहां पर मिट्टी-मिट्टी है और ऊंचे-ऊंचे दोहरे भी है।